इस तस्वीर में मुझे कुछ लाल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे दो खिड़की दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे सैनिक विश्राम ग्रह सतना दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे बहोत सारे लोहे के सलिए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ शटर दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक बस दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ लेबर दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ कार्डबोर्ड दिखाई दे रहे हैं।